और वास्तव में बहोत गजब का नजारा ऐसा गजारा मुझे कभी नहीं देखने को मिला बहोत ही वास्त में बहोत ही नजारा अजीब का नजारा दी --

और यहां पे अलमारीयां भी बहोत सारी दिखाई दे रही है और लड़कों की फोटोए भी बहोत सारी ज्यादा दिखाई दे रही है।

क्योंकि टमाटर के बिना जीवन अपना कैसे भी नहीं चल सकता चाहे कुछ भी हो जाए टमाटर को हमे कभी नहीं छोड़ने चाहिए।

कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं सामने कुछ डिब्बे भी नजर आ रहे है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे --

एक नाई की दुकान के ऊपर नाई का दुकान बन रखा है रखा हुआ है इधर सामने पत पता नहीं क्या रखा हुआ है और सामने बहुत सारा सामान --

और हीरा एच_एफ भी नज़र आ रही है और हीरों का शोरूम भी नज़र आ रहा है इसके अंदर बहोत सारी लाइटें नज़र आ रही है और इसके ऊपर बहोत ही बड़ा --

हमें यहां पर एक राखी की दुकान दिखाई दे रही है और एक टेंट दिखाई दे रहा है और एक लाइट दिखाई दे रही है बाहर बारिश हो रही है इसलिए यहां पर टेंट ताना गया --

और पशासनिक भवन भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत कुछ आदमी है जो पैदल भी चल रहे हैं।